पीछे सीटों के लाइट लगी हुई है।

सेम्पल कैप लगाई हुई है।

मैदान में साइड से एक रास्ता बना हुआ है।